पेड़ भी है बाहर भी कुछ छोटी-छोटी घासे उगी हुई है बाहर कत्थई कलर का एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

इस इमेज में आप देख सकते हैं एक जंगल है जंगल में हिरन खड़े हुए हिरन के बच्चे भी हैं और कुछ लकड़ी का भी रखा हुआ है।

इस इमेज में आप देख सकते हैं यह एक आइडिया का फोर जी ऑफिस है बाहर जो है बोर्ड लगा हुआ है।

प्रोडक्ट का पार्लर है एक डस्टबिन रेड कलर का रखा हुआ है।

इस इमेज में हम देख सकते हैं पास ही में एक रोड गया हुआ है जहां से कुछ कारे जा रही है साइकिल जा रही है पास में एक एच_पी का पेट्रोल पंप है ऊपर से तारों की लाइन गई हुई है।

जो है वाइट और कत्थे कलर से पेंट हैऔर नीचे जो बाउंड्री है वाइट कलर से पेंट हैकुछ पौधे लगे हुए हैं रोड गया हुआ है।

ग्रीन कलर की रेलिंग है एक बन्दा जो है होंडा की बाइक से जा रहा है।

बहुत सारे खंबे दिख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं बिल्डिंगें भी हैं।

गुमटियों में पौधे लगे हुए हैं बड़े-बड़े पौधे भी लगे हुए हैं।

बहुत खूबसूरत है और कुछ जो है टॉय भी हैं।

इस इमेज में हम देख सकते हैं एक तंदूरी चाय का स्टॉल है।

जहां कुछ तंदूर के कप भी रखे हुए हैं बिस्किट्स के डिब्बे दिख रहे हैं पानी की बोतलें दिख रही हैं एक जो है लड़का खड़ा हुआ है।

ब्लैक कलर के फेन लगे हुए हैं और जो हाल है डेकोरेट है पूरा बैलून से जिसमें--

ये एक जिम है जहां कुछ लड़के वर्कआउट कर रहे हैं जिम की मशीनें रखी हुई हैं।

इस इमेज में हमें दिख रहा है एक माता की मूर्ति रखी हुई है और जो है ये पूरा डेकोरेट है बलून से कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं।

और एक रानी एक मूर्ति रखी हुई है और उसी के पास--

एक ब्लू कलर की जैकेट है एक येलो कलर की जैकेट है।

इस इमेज में हमें एक जो है पार्क दिख रहा है जहां बहुत सारे ग्रीन कलर के पेड़ हैं जमीन पे भी छोटी-छोटी ग्रीन कलर की घास लगी हुई है।